एक फील्ड दिख रहा है। मैदान दिख रहा है। मैदान बहोत बड़ा सा मैदान है ये।

एटीएम एटी ये एटीएम है बीओआई । मतलब --

लाइन देखिये खड़ा हुआ है ए.टी.एम से पैसा उठाने के लिए।